कुछ-कुछ ताड़ की गाछी भी दिख रही है सफ़ेद रंग की एक ये स्कूल है।

कुछ कपड़े भी वगेरा दिख रहे है जो कि पसरे हुए है पीछे लंबी-लंबी पाइप भी दिख रही है पेड़ भी दिख रहे हैं नीला आसमान भी दिख रहा है।